यहा पे बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े घरानो से और फुटबॉल खेले जाते है।

बड़ी एक अलमारी रखी हुई है | पता नही अंदर और भी कमरे है ।